ये गार्डन का पीक है जिसमे झूला लगा हुआ है ढेर सारे बच्चे झूल रहे हैं बाहर एक चेयर लगी हुई है जिसमे बहार एक डस्टबिन रखा पड़ा है गार्डन है उसके बाहर वहाँ ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं जो की दिखने में बोहोत अच्छे लग रहे हैं नजारा बोहोत खूबसूरत है।

बाहर एक बड़ा सा पेड़ है जो कई रंगो से रंगा हुआ है उसके चारो ओर मेड़ बनी हुई है जिसपे कई लोग बैठे पड़े है बाहर एक फूल का पेड़ भी है जिसपे कुछ लोग